और बहोत सारे डब्बों में कलर पेंट भरे--

तेल की टिब्बे दिखाई दे रही है और यह जगह काफी बड़ी है।

पौधे भी दिख रहे--

नित्य कर रही है और चौदह फरवरी --

टेबल और चेयर लगे हुए हैं और एक दो लोग--

सूख चुका है और बड़ा सा--

कुछ बच्चे दिख रहें हैं और दो मैम सर --

बच्चों के खिलौने दिखा रहे--

यह एक मॉल जैसा दुकान है जहां दो तीन चार--

दुकान है जहां अलग अलग--

शुवर शू है और गाड़ियां--

खांझी सांस्कृतिक भवन नगर पालिका निगम--